नीचे कुछ बना हुआ आएगा कुछ लिखा हुआ है उसके साइड पे पेड़ पौधे हैं काफी सारे --

यहाँ पर पत्थर-वत्थर भी है कुछ लोग है स्विमिंग कर रहे है कुछ लोग खड़े है और यहाँ पर खंभे लगे हुए है कुछ लोग नहा रहे है ।

और साइड में कुछ लोग है यहाँ पे चेयर वगैरह रखी हुई हैंगी और दुकान है पोस्टर लगे हुए है ऊपर रात का समय है पेड़ भी लगे हुए है।